नाव दिखाई दे रही है एक नाव में बहोत सारे लोग सवार हैं।

यह एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि लाल और सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है।

तार भी दिखाई दे रहे हैं पेड़ की पत्ती भी नजर आ रही हैं।

एक पोस्टर दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है पीछे एक घर भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ कुछ डॉल दिखाई दे रही है जो की पील नील गुलाबी सफेद इत्यादि कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

एक दुकान का सामान दिखाई दे रहा है जिसमें कोल्ड्रिंक पानी की बोटल इत्यादि बोटल दिखाई दे रही है और कुछ पैकेट भी नजर आ रहे है जो कि पिले नीले हरे गुलाबी इत्यादि कलर के दिखाइ दे--